फोर व्हीलर दिख रहा है वहीं पे हमें--

हमे इस पिक्चर में एक चेयर देखने को मिल रहा है।

वाटर बोतल देखने को मिल रहा है।

वहां पे हमें आस पास आस पास में बहुत सारे हरे भरे पेड़ हमें देखने को मिले हैं।

फोटो में हमें एक इंडस्ट्री देखने को मिल रहा है।

वहीं पे हमें चेयर देखने को मिला है।

नदी में पानी देखने को मिला है।

मेरे सामने एक कॉफी का शॉप है जिसके अंदर हमें--

टेबल देखने को मिल रहा है वहीं पे हमें ए--

बेंच टाइप का लगा हुआ है जिसके ऊपर--

यहां पे हमें बहुत सारे टेबल देखने को मिले हैं।

इस फोटो में हमें एक सामने में पुराना तपड़े का घर देखने को मिल रहा है।

उनके पैरों के नीचे मोर बैठी हुई है।

बहोत सारे फोर व्हीलर देखने को मिल रहे हैं।

झरने का पानी नीचे की ओर आता हैं।

छोटे से पेर प गिर रहे हैं।

एक टेबल रखा हुआ है उसके ऊपर साइड में ए--

चारो तरफ बहोत बरे-बरे हरे-हरे --

यहा पे झरने की ओर से पानी आता है।

इस ते एक साइड में बहुत सारे हरे हरे पेड़ लगे हुए है।

इधर साइड में अलमारी टाइप का बना हुआ है वहां पे बहोत सारे टेप रखे हुए हैं।

लाइट्स लगे हुए हैं उसके आस पास में--